उसका पीछे में एक बाइसाइकिल भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहोत ज्यादा एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है और बहोत ज्यादा सामान दिखाई दे रहा है।

ये एक ए_टी_एम है रेड कलर से पेंटिंग किया हुआ है अंदर में और उ बाहर में वाइट कलर से किया हुआ है।

यहां बाइक भी पार्किंग करके रखा हुआ है।

इसमें बहोत ज्यादा ये इलेक्ट्रिक वायर भी जा रहे हैं।

बहुत ज्यादा आदमी खड़ा किया है इसका साइड साइड में।

लाइट भी लाइट बल्ब भी दिखाई मिल रहा है।

बहुत ज्यादा फ्लैग अलग अलग कंट्री का फ्लैग लोग भी दिखाई मिल रहा है।